यहां पर एक बड़ी सी शॉप दिखाई दे रही है।

शॉप में बहोत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।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

होटल पर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा है।

होटल पर काले कलर के कांच भी दिखाई दे रहे हैं।

साइड में बहोत सारे पेड़ पौधे भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर वाइपर लोहे की सीढ़ी भी दिखाई दे रही है।

यहां पर बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

पेट्रोल पंप पर कई सारे पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं।